पीछे बहोत सारे कपड़े रखे हुए है जिन में बहोत सारे फ्रॉक हैं।

यह एक घर का चित्र हैजिसमें एक द्वार है।

जहां पर सामने एक बोर्ड लगा है। जिसपर शिव कलेक्शन लिखा है और मैंस वियर लिखा है।

यह एक हॉस्पिटल का चित्र है।

यह एक मार्केट के बीच का फोटो है।

बाहर दो खिड़की हैं। बहुत रंग बिरंगा पेंट किया गया है। ऊपर में कोरकेट है।

बाहर में बहुत सारे पेड़ हैंजो हरे रंग का है।

नीचे बहोत सारे पेड़ लगाया गया है जिसे घेरा भी गया है।

ऊपर में बहुत सारे बलून लगे है जो की लाल गुलाबी और काले रंग की है।

सामने एक हरे रंग का टेबल है।

यह एक वॉटरफॉल का चित्र है जहाँ पर ऊपर से पानी गिर रहा है।

किनारे में पेड़ पौधे है।

यह एक दुकान का चित्र है। जहां पर बहोत सारे सामान रखे हैं।

किनारे में बहुत सारे बकेट हैं।

बगल में एक रोड है।

यह एक पेंटिंग का चित्र है।

कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे है।

यह एक द्वारा का फोटो है जहां पर सामने बहोत सारा फुल लगा है।

बहुत सारी झाड़ियां भी है जो की हरे रंग की है।

यहाँ एक डांस फ्लोर का चित्र है।

बहुत सारे डी_जे हैं जो ब्लैक रंग के हैं।

यह एक नाश्ता दुकान का चित्र है।

यहां पर बहोत सारी महिलाएं खड़ी हैं।